सीमेंट का ब्रिज जैसा दिख कुछ चलने वाला दिखाई दे रहा है।

पेड़ सब बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और फ्लैग जैसा लटकाया हुआ है वाइट कलर रेड कलर और पर्पल सामने।

यह तस्वीर में फूल दिखाई दे रहा है जो की रेड कलर और व्हाइट कलर में है।

पिंक कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में जंगल दिखाई दे रहा है एक ठो फिर उसके सामने में कपड़ा सूखाते दिखाई दिया दे रहा है।

ये तस्वीर में जो एक टेबल दिखाई दे रहा ब्राउन कलर का फिर चेयर दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में मूर्ति दिखाई दे रहा है फिर एक बिलिंग घर दिखाई दे रहा है जो की येलो कलर और रेड कलर में है।

कुछ का एक कार्टून में वायर सब रखा हुआ है।

ये तस्वीर में एक फ्रिज दिखाई दे रहा है जो कि सिल्वर कलर में है।

रोड सब दिखाई दे रहा है बहुत सा रास्सी रखा हुआ है।

टेबल दिखाई दे रहे जोकि ब्लू कलर में है।